उधर एक टावर है ।

बहुत साफ सुथरे है और टीचर भी सबको अच्छे से रखते है बताते है।

यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं सभी कोई एक पिक्चर बना रहे हैं।

ओर पिंक कलर का ओर पीला कलर का गेंद का फूल और उसके बगल में अड़हुल का फूल |

ओर उसके बगल में एक बड़ा इंस्टिट्यूट है।